ये एक योगा क्लास दिख रही है।

सामने की दीवार लाल कलर से--

ये एक पार्क दिख रहा है।

यह एक शादी हॉल का--

पिकनिक स्पॉट दिख रहा है।

और इस नदी के बीच में--

बहुत बड़े-बड़े पत्थर भी रखे हुए हैं।

जहां पर घास लगी हुई है।

इस मस्जिद के आसपास--

शायद यह एक पार्किंग है।

जूस की शॉप दिख रही है।

बहुत सारे बैट और बॉल रखे हुए हैं।

जिसका नाम भोपाल इतर हाउस है।

यह एक स्विमिंग क्लास का सीन दिख रहा है।

इन बॉक्सेस के अंदर साप पानी पीने के लिए एक बहोत बात टब भी है।

जहां पर ऑटो कार एक्टिवा बाइक हर तरह की गाडियें हैं।

कुछ लोग भी खड़े दिख रहे हैं और ये दिन का समय हो रहा है।

यह एक खाली पार्क का सीन दिख रहा है।

एक पानी का पूल भी--

अलग-अलग कलर्स लगे हुए हैं।

जिसका नाम अनाकैडमी सेंटर है।

इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और एक पंखा भी लगा हुआ है।

बैलूंस भी लगे हुए हैं--

और कुछ बच्चे भी दिख रहे है।

यह एक टैटू स्टूडियो का सीन है जहाँ पर एक अंकल बाहर खड़े हुए हैं।

जहां पर एक ही लाइट जल रही है क्योंकि बहोत डिम लाइट है।